यूजर रजिस्ट्रेशन के चौथे भाग में आपका स्वागत है
हम इन प्रक्रियाओं को ठीक से देखते हैं
हम अपने यूज़रनेम और पासवर्ड के लिए सुरक्षा और चेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो सचमुच में अच्छा है
यदि मैं भ्रमित हो रहा हूँ तो कृपया मुझे बताएँ
मुझे ई मेल करें या यूट्यूब के ज़रिए कमेन्ट करें
अपने यूजर को रजिस्टर करने की प्रक्रिया में चलते हैं
पहले हमें अपने डेटाबेस से जुड़ने की आवश्यकता है
हम अपनी टेबल खोलने जा रहे हैं और अपनी वैल्यूज़ प्रविष्ट करते हैं
आपको लगता होगा कि यह बहुत सरल है
अतः सबसे पहले मैं एक सूचना लिखने जा रहा हूँ जो है सक्सेस
अपने पेज पर वापस आते हैं
मैं इसमें वापस जाता हूँ और सभी चेक्स जिन्हें हमने पहले बनाया था उन्हें जाँचता हूँ
अतः मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा और यह दर्शाता है प्लीज फिल इन अल्ल थे फील्ड्स
यदि मैं विभिन्न फील्ड्स भरता हूँ फिर भूल जाता हूँ और रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ यह अभी भी सूचना दिखा रहा है
अतः मैं एलेक्स टाइप करने जा रहा हूँ और मैं अपना यूज़रनेम चुनने जा रहा हूँ
फिर मेरा फुलनेम टाइप करता हूँ और मैं एक पासवर्ड चुनने जा रहा हूँ जो एबीसी है
आगे मैं कैरेक्टरों का मिश्रण टाइप करूँगा
अतः जब मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ इसे दर्शाना चाहिए यूर पासवर्ड्स डोएस नोट मैच
अतः स्क्वैर में वापस जाएँ
हम एलेक्स गैरेट टाइप करने जा रहे हैं
हम एक पासवर्ड एबीसी चुनने जा रहे हैं
चूँकि यह 6 कैरेक्टर्स से छोटा है जब मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ पासवर्ड्स मस्ट बीई बेटवीन 25 एंड 6 कैरेक्टर्स
अतः यह चेक कार्य कर रहा है
अब मैं फुलनेम के लिए एलेक्स गैरेट टाइप करूँगा और मेरे यूज़रनेम के लिए एलेक्स
पासवर्ड पूरी लम्बाई का पासवर्ड होने जा रहा है
6 कैरेक्टर्स से अधिक
मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा
आप देख सकते हैं लेंग्थ ओएफ थे यूजरनेम ओर फुलनेम इस टू long अतः यदि आप चाहें तो आप इन चेक्स को लिख सकते हैं
मैं यह आप पर छोड़ता हूँ
अतः अभी हमें एक सफल फॉर्म प्रमाणीकरण मिल गया है
अब हम क्या करेंगे कि अपने यूजर के पंजीकरण के साथ जारी रहेंगे
अब यह फॉर्म पंजीकरण सही नहीं है
हर बार हमें एक एरर मिलती है यह फील्ड्स गायब हो जाती हैं यह चली गयी हैं
और यूजर को फिर से टाइप करना होगा
अत मैं क्या करने जा रहा हूँ कि हमें हमारा फुलनेम यूज़रनेम और पासवर्ड वेरिएबल्स मिल गये हैं
इस पेज को ध्यान में रख कर हम यहाँ इस एचटीएमएल कोड में पीएचपी सम्मिलित कर सकते हैं
अपने फुलनेम के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ वैल्यू इक्वल टो बॉक्स के अंदर एक वैल्यू और एक फ्पटैग खोलते हैं
अंदर पह्प टैग बंद करें
मैं यूज़रनेम या बल्कि फुलनेम एको करने जा रहा हूँ
मैं अपने यूज़रनेम के साथ बिलकुल वही करूँगा
अतः वैल्यू इक्वल्स ओपन पह्प टैग्स क्लोज पह्प टैग्स और यूज़रनेम एको करें
यह सुनिश्चित करें कि लाइन टर्मिनेटर वहाँ हो
अब क्या होगा कि मैं यहाँ यह बेतुका लम्बा नाम चुनता हूँ और एक यूज़रनेम एलेक्स चुनता हूँ
यदि आप अपने पासवर्ड्स का संचय होना नहीं चाहते हैं
अतः यह यूजर पर छोड़ते हैं
मुझे बहुत बड़ा यूज़रनेम मिला है और यह फिर से यह एरर देगा
जब मैं रजिस्टर क्लिक करता हूँ इस बार यह हमारा फुलनेम और यूज़रनेम रखता है
अतः यह नियम है
यदि आपको एरर मिलती है और आपको आपका यूज़रनेम आपका फुलनेम आपका पासवर्ड या आपका फर्स्टनेम मिडलनेम सरनेम मुझे नहीं पता आपके यूजर फॉर्म में कितने फील्ड्स हैं सब कुछ फिर से टाइप करना हो अपना नाम बार बार टाइप करना कष्टकर होगा
अतः यह इस्तेमाल करते हैं आपका पह्प एचो पह्प टैग्स के अंदर आपके एचटीएमएल इनपुट टाइप के वैल्यूज़ के अंदर और यह काफी लाभदायक है और उपयोगकर्ता के लिए काफी अधिक सुविधाजनक और काफी अधिक यूजर फ्रेंडली है
ठीक है अन्यथा Success
एको करें
मैंने अभी तक एक सफल फॉर्म नहीं दिया है
अतः मैं टाइप करूँगा एलेक्स गैरेट और मेरा पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स से अधिक और 25 कैरेक्टर्स से छोटा होने जा रहा है
रजिस्टर पर क्लिक करें
एक एरर सूचना
चलिए देखते हैं
हमने एरर चयनित की और यदि पासवर्ड की लम्बाई 25 से अधिक है या पासवर्ड के स्ट्रिंग की लम्बाई 6 से कम है तो पासवर्ड एको करें यह काफी हैकिन्तु हमें अभी भी वही समस्या हो रही है
मैंने अभी ध्यान दिया कि हमारे पास हमारे पासवर्ड की एनक्रिप्टेड वैल्यू है
और हमारा मद5 एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग काफी बड़ा है
यह 25 कैरेक्टर्स से काफी ज्यादा है
अतः फिर से मैं क्या करूँगा कि कोड के इस ब्लॉक को जो हमारे टेस्ट को एनक्रिप्ट करता है उसे लूँगा
इसे कट करें और इसे रजिस्टर थे यूजर के नीचे लायें
अतः आप अनुभव से देख सकते हैं कि चीज़ों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है
यदि आपको इस तरह की एरर्स मिलती हैं अपने कोड में जाएँ
उसे देखें और देखें आप क्या कर रहे हैं
केवल डीबग क्रिया के लिए यूजर चीज़ों को आपके कोड के बीच में एको करता है
अब मैं अपने फॉर्म में वापस जाऊँगा और मैं अपना पूरी तरह से स्वीकार्य पासवर्ड इसमें टाइप करने जा रहा हूँ
रजिस्टर पर क्लिक करें
हमें हमारी सक्सेस सूचना मिल गया
अतः आप देखते हैं अपने कोड में जाने से आपको सहायता मिलती है यदि उसमें कोई समस्याएँ हैं
मैं इन्हें देखने में काफी तेज़ हूँ
किन्तु कभी कभी मैं विडियो रोकता हूँ कोड में देखता हूँ और फिर पुनः विडियो चलाता हूँ
मुझे अपने दर्शकों को रोक कर रखना अच्छा नहीं लगता
अतः आप भी जल्द ही अपनी गलतियों को समझेंगे
अतः हमें हमारा सक्सेस मिल गया है और अब हम लिखेंगे ओपन और डेटाबेस
यह करने के लिए हमें हमारे कनेक्ट वेरिएबल की आवश्यकता है नहीं आपको नहीं हैमैं करने जा रहा हूँ माय एसक्यूएल कनेक्ट
और मैं मेरे लोकल होस्ट सर्वर से जुड़ रहा हूँ जोकि मेरा कम्प्यूटर है और रूट और मेरा पासवर्ड कुछ नहीं है
मैं करने जा रहा हूँ माइस्क्ल सिलेक्ट दब्
यह हमारा डेटाबेस चुनने जा रहा है
अतः लिखें सिलेक्ट दाता बसे
जबकि यह स्पष्ट है
यह पह्प लॉगिन है और यहाँ मैं एक क्वेरी देने जा रहा हूँ
अतः क्वेरी रजिस्टर
यह माइस्क्ल क्वेरी के बराबर होने जा रहा है
यह इस ट्यूटोरियल का महत्वपूर्ण भाग है जहाँ हम वास्तव में अपनी वैल्यूज़ प्रविष्ट करते हैं और हम हमारा यूज़रनेम रजिस्टर करते हैं
अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ जिससे कि आप यह देख सकें
यह इंसर्ट इंटो यूजर्स है
यदि हम यहाँ वापस जाते हैं यह यहाँ है पह्प लोगिन हमारी टेबल है जिसे हमें चुनना है
अतः माइस्क्ल सिलेक्ट दब् पह्प लोगिन
और हम यूजर्स में प्रविष्ट कर रहे हैं जोकि डेटाबेस में हमारी टेबल है
और हम लिखेंगे वैल्यूज ब्रैकेट्स टेबल की प्रत्येक वैल्यू
अतः प्रत्येक फील्ड टेबल में उपस्थित है
अतः यदि हम यहाँ तक वापस जाते हैं और ब्राउज या स्ट्रक्चर पर क्लिक करते हैं तो हमें इद नामे यूजरनेम पासवर्ड डेट मिलता है
अतः 1 2 3 4 5
यहाँ भी हमें 1 2 3 4 5 की आवश्यकता है
यदि आपको पिछले ट्यूटोरियल से पता हो यह इद स्वतः से बढती है
अतः हमें इसमें चाहिए क्रम बहुत महत्वपूर्ण है
हमें हमारा नामे यूजरनेम पासवर्ड डेट मिल गया है
अतः यह केवल नामे यूजरनेम है
यह पासवर्ड रिपीट पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है
यह केवल चेक के लिए है और यह डेट होगा
अतः यहाँ यह वेरिएबल्स यदि आप अधिक सुनिश्चित नहीं है तो यह यहाँ ऊपर हैं जहाँ हमारे पास हमारे फुलनेम यूजरनेम पासवर्ड और डेट है
चलिए इसे फुलनेम में बदलते हैं
ठीक है अतः इसे कार्य करना चाहिए
यह पूरा हो जाने के बाद मैं लिखूँगा यू हेव बीन रजिस्टर्ड
वास्तव में मैं यह करने जा रहा हूँ आई से डाइ
यू हेव बीन रजिस्टर्ड रिटर्न टो लोगिन पेज
इसे इंडेक्स पेज में वापस जाने की लिंक बनाएँ जहाँ यूजर लॉगिन कर सके
आप देख सकते हैं कि कैसे यह क्षण में निष्पादित हुआ और यह मेरा पिछला पेज है
चलिए एलेक्स गैरेट लिखते हैं
यूज़रनेम एलेक्स चुनते हैं और इसे आपका पासवर्ड यू हेव बीन रजिस्टर्ड
रिटर्न टो लोगिन पेज
अब मैं ब्राउज में मेरा डेटाबेस जाचूँगा
आप देख सकते हैं मुझे एलेक्स गैरेट मिला
मेरी इद 3 है मेरा यूजरनेम एलेक्स है
000937 000903 मेरा पासवर्ड मेरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड है और मेरा डेट दिनाँक है
बस इतना ही
अतः अगले भाग में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कुछ चीज़ों को सुव्यवस्थित करें और लॉगिन क्रिया जाँचें
मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ